नीचे में एक व्यक्ति जो टाइल्स या मार्बल नापते हुए नजर आ रहा है टेप से पीछे में हरे--

नीचे मे कुछ हरे कलर की और लाल कलर की मेटी बिछी हुई है साइड मे एक व्यक्ति मो विडियो --

यहाँ सामने एक मका-- दुकान दिख रही हैंजिसमें एक व्यक्त्ति भी खड़े हुए हैंजर्सी पहने हुए हैं जेब में हाथ डाले हुए हैं।

और वहाँ एक अ ई-रिक्सा भी अ ई-रिक्शा भी जाते दिख रा है जिस में कुछ पैसेंजर वग़ैरा बैठे हुए नजर आ रहे हैं आसमान दिख रा है और यह दिन का समय ही धूप नि--

और दुकान में बाहर रे फूल के हार टंगे हुए दिख रहे हैं साइड में दो व्यक्ति चेयर मैं बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साइड में दो चेयर लाल कलर की और रखी हुई हैं दुकान--

इसमें कई व्यक्तियों के फोटो भी बने हुए है और कुछ कांच भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं और--

और नीचे कुछ बाइके खड़ी हुई हैं औ बाइक खड़ी हुई हैं और लेडीज और कुछ जेंट्स की वहाँ भीडभाड नजर आ रही है धूप निकली हुई है और ये दिन का समय है और कुछ बाइक साइड में भी ख--

ये रात का समय है और साइड में एक बीचो-बीच कुर्सी लाल कलर की चेयर दिखाई--